नीला है गुलाबी है पर्पल है और सफेद है और कथाई --

और बालो में गजरे का फूल लगाए है।

और श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी है।

और उसमें दो नाव दिख रही हैं।